यहां पर हमें एक ई कार्ट ऑटो दिखाई दे रही है।

व्यक्ति बाहर की तरफ खड़ा हुआ है चाबी देता हुआ एक महिला को नजर आ रहा है यह दोनों फोटो लेते हुए दिखाई दे रहे--

और यहां पर अ बहोत सारी एक्सरसाइज की मशीन भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

मेहंदी सेरेमनी के लिए यहां पर एक--

प्ले ग्राउंड बनाया गया है जिसमें की कलर कलर की हार मालाएँ और --

यहां पर एक बड़ी सी दुकान दिख रही है इस दुकान में फर्नीचर अलमारी सब दिखाई दे रहा हैं।

बॉक्स रखे हुए दिख रहे हैं इन बॉक्सेस में हमें कुछ सामान पैक किया हुआ नजर आ रहा है।

ये चार लड़कियां हैं और यह चारों लड़कियां एक ही स्टेप करती हुई नजर आ रही--

जहाँ पर बड़े बड़े साइज़ के चीनी के मटके चीनी के --

और यहां पर दोनों तरफ दिवालों पर रालामंडल अभ्यारण लिखा हुआ है।

कंपनी नजर आ रही है जहां पर की ऊपर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है।

होटल टाइप कुछ दिखाई दे रहा है जिसपे राधाकुंज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

यहां पर बांस का एक बना हुआ छोटा सा रूम टाइप दिख रहा है और पास ही में एक घर बना हुआ--

साइड में कुछ नोटिस बोर्ड लगे है ऊपर की तरफ ए_सी लगा है।

यहां पर हमें कुछ महिलाएं एक बड़े से हाल में--

यह रास्ता एक चर्च की तरफ जाता है।

यहां पर एक व्यक्ति बाइक में पेट्रोल भराता हुआ नजर आ रहा--

और यह खंडर बहोत पुराना सा दिखाई दे रहा है।